अमूल नाम का फ्रिज रखा हुआ है टाइल्स दिख रही हैं।

उस खम्बे से बहुत सारे तार इधर उधर जा रहे हैं।

कई सारे फोर व्हीलर हैं। दो इंसान खड़े हैं।

कई सारे इंसान दिख रहे हैं। बहुत सारी स्लाइडें लगी हुई हैं।

एक इंसान का पैर दिख रहा है।

साइड में एक ए.सी. भी लगा हुआ है।

काँच का गेट लगा हुआ है। कई सारी कुर्सियां रखी हैं।

एक बड़ा सा हॉल है नीचे बहुत सारे सामान बिखरे पड़े है।

एक नाव है। नाव के ऊपर बहुत सारे बैलुन लगे हुए हैं। वहीं एक --

एक नदी है नदी की कोने पर --

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बिल्डिंग बनी हुई है। बहुत सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

एक जाली लगी हुई है जाली के अंदर एक पेड़ है |

बैलून लगे हुए हैं। एक बॉटल रखा हुआ है। टेबल बना हुआ है।

चार लोग दिखाई दे रहे हैं। एक --